इस इमेज में एक पार्किंगे दिखाई दे रहा है यहाँ अच्छा सा एक कारखाना एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है एक जिसके आजु-बाजु पेड़ है।

ग्रीन कलर की बाउंड्री दिखाई दे रही बड़े_बड़े पत्ते के के लगे हुए पेड़ हैं दिखाई दे रहे हैं और बहोत झाड़ीदार पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं एक छोटा_सा दिखाई दे रहा-- है।

इस इमेज यहाँ मुर्गे ए यहाँ हिरन हिरणा दिखाई दे रहे है कुछ बंधे हुए ए-- कुछ ए-- ऐसे दिखाई दे रहे है कुछ --

शेर है खड़ा हुआ वहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ दूर्वा लगी हुई वह कुछ सूख--